बाहर म आदमी खड़े हैं अंदर जा रहे हैं सामने दो रिसेप्शन पे खड़े हैं।

दुकान के अंदर बहुत सारे बहुत प्रकार के पाउच है नेकी के हैं शॉन है।

चुनरी लगी है कई दीवार पे चित्र लगे है और फिसल पट्टी है और नहा रहे बच्चे बहोत ही सुंदर लग रहे हैं।

और प्रेड करते हैं टीचर खड़े हैं और बच्चों के बैग भी रखे हुए हैं।

और इसमें आने और जाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक सिदियाँ लगी हुई है और ऊपर एक ब्लू कलर का और एक लाल कलर का --

खड़ा है मकान के बाहर गमलों मे पेड़ पौधे लगे हुए है और --

यह एक बहोत बड़ा पार्क है पार्क में बड़े बड़े पेड़ लगे हुए हैं पार्क --

मोटर गैरेज है एक स्कॉर्पियो गाड़ी खड़ी है इसकी एक सफाई कर रहा है।

अंदर जा रहा है नॉन वेज रेसिपी है पास में होटल है।

यह एक बहोत ही बड़ी होटल है होटल की लाइटें जली --

पेट्रोल पंप है पेट्रोल पंप पे दो आदमी खड़े हैं एक आदमी पेट्रोल दे रहा है।